सामने एक मंदिर जैसा बना हुआ हैं जिसमे खंबे दिखाई पड रहे हैं जो की व्हाइट कलर में दिख रहे ऊपर कुछ गुंबद जैसा बनाया जो की गुल --

सामने एक खम्बा सा गोल सा बना हुआ है जो कि मकान के जैसा बना हुआ है जो कि ब्लैक कलर और ग्रे कलर में दिखाई पड़ रहा है और जो कि पीछे दीवार दिखाई पड रही है जो की ग्रे कलर में दिख रही है सामने कुछ पहाड़ जैसा दिख रहा है उसपे कुछ पत्थर दिखाई पड रहे है जो की ग्रे कलर में दिखाई पड रहे है।

सामने एक रोड जेसा दिख रहा है जोकि ग्रे कलर में दिखाई पड रहा है बिच मे फुटपाथ दिखाइ पड़ रहा है जिस पर एक खंभा लगा हुआ है जो की ब्राउन कलर ग्रे कलर में दिख रा हे सामने एक जाली जेसा लगा हुआ है उसमे पेड़ लगा हुआ है।

सामने एक कार दिखाई पड रही है जो कि व्हाइट कलर और सिल्वर कलर में दिख री है निचे जमीन ग्रीन अ ब्राउन कलर में दिखाई पड़ रही है सामने एक बोर्ड लगा हुआ है जोकि येल्लो कलर का दिखाई पड रहा है सामने एक पेड़ दिखाई पड रहा है उसका निचे का हिस्सा ब्राउन कलर और ब्लेक कलर में दिख रहा हैं।

हमे सामने एक ग्राउंड दिखाय पड़ रहा है जिस में घास लगी हुई जो की ग्रीन कलर की दिख रही है कुछ जगह ब्राउन कलर की भी दिख रही है सामने एक पाइप जाते हुए दिखाई पड़ रहा है एक छोटा सा पेड़ लगा हुआ है।

सामने एक शोरूम जैसा दिख रहा है यहाँ पर सामने टेबल जैसा बना हुआ है यहाँ पे दीवाल का कलर ब्राउन कलर में दिख रहा है सामने एक डस्टबिन रखा हुआ है जो कि सिल्वर कलर